एक घर बना दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बल्ब दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक इंसान दिखाई दे रये उसने काले कलर की सार्ट पहनी हुई है औ यहाँ पे ईठ पंखा भी दिखाई दे रहे है।